सामने लिखा है प्रदूषण जांच केन्द्र और एच_पी गुड़गांवा।

एक सीट है और दो स्विच बोर्ड लगे हुए हैं।

पीछे भी काफी सारी साड़ियां नजर आ रही हैं।

पीछे स्वयन वाला वाटर पार्क वाला झूला लगा हुआ है।

एक लड़का है जो चेक वाली टी शर्ट पेहन कर जा रहा है ब्लू कलर की उसनें जींस पेहनी हुई है।

सामने लिखा हुआ है लॉन्ड्री लेवीकेयर योर फैब्रिक्स आवर सर्विसेस ट्वेंटी फोर इनटू सेवन ।

सामने लिखा हुआ है मानसा मेहल।

नाइन एट नाइन सिक्स वन थ्री सेवन फोर वन सेवन ।

गिलास रखे हुए हैं कांच के एक मेनू है एक लड़का बैठा हुआ है।

तो औरतें और एक आदमी बैठे हुए हैं।

बाहर एक पेड़ है एक एक्टिवा खड़ी हुई है और एक ऑटो भी खड़ी हुई है रात का समय है काफी सारे पेड़ हैं।

और घास दिखाई दे रही हैं शाम का समय लग रहा है।

इस फोटो में एक ए_सी लगा हुआ है। सामने पडदे लगे हुए हैं ब्लू कलर के।

और बैठने की जगह दिखाई दे रही है डस्टबिन भी दिखाई दे रहा है एक लड़का बैठा हुआ है आस पास घर नजर आ रहे है।

इस फोटो में ब्राउन कलर के सोफे दिखाई दे रहे हैं एक छोटी सी टेबल दिखाई दे रही है फर्श पे व्हाइट कलर के टाइले लगी हुईं है।

सामने पोस्टर पे लिखा है मोहित कन्फेक्शनरी एंड जनरल स्टोर स्प्राइट चिल्ड पिओ चिल्ड रहो।

थर्ड पे लिखा है एसेंशियल अमीनोन ।

नीचे फ़र्च्यून की थैलियां रखी हैं।

और फोन नंबर भी दे रखे हैं इन्होंने अपने बाहर एक एक्टिवा और एक बाइक खड़ी हुई है।